बोहोत से आदमी नहाते होंगे। यह नदी के चारों ओर बहुत ही बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगाए गए --

समान रखे गए हैं कुरकुरे है बिस्कुट है मिक्चर है चने हैं चॉकलेट है । बहोत अनेक प्रकार के समान रखे हैं।